और जेंट्स एक पैर पर पैर रख के बैठे हुए है।

और हम खरीद सकते हैं | यहाँ पे रेड कलर ब्लैक कलर का है।

और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है कुछ नहीं ठीक किया हुआ है फोर व्हीलर देखने में ठीक नहीं लगता है और चारों तरफ से गिरे हुए बिल्कुल ठीक नहीं है।